और दिवारो पर चारो तरफ--

चारो तरफ बड़ी-बड़ी तेल की बोक्सीस टीन्स रखी हुई है ओर छत पर बहोत ही--

रात का समय है बस स्टँड पर बहोत सारे लोग लोहै की कुर्सियों पर बैठकर सो रहै है ट्रॅवलर बॅग भी रखी हुई है।

सड़के किनारे बहोत सारे लोग मास्क लगाये हुए मच्छलियो को बेचते रहै है ओर उनके--

बरफ डालकर मच्छलिया रखी हुई है।

शोर्स पेहनी हुई है और सर पर गॉगल्स लगाये हुए है पैरो मे नीले ओर सफेद रंग के चुराबी पेहनी हुई है।

चारो तरफ हरियाली है पतियो का रंग हरा है बिजली के खंबे तारे लगी हुई है।

आसमान नीले और सफेद रंग का है जो की बहोत ही खुबसूरत लग --

जुनियाल पेटी हुई है चारो तरफ सफेद ओर आने-जाने के लिए दरवाजे बने हुए है एक--

बड़े से मैदान मे चारों तरफ हरियाली है बड़े - बड़े पेड लगे हुये है बैठने के लिए स्टूल है जिसमें --

यो का रंग हरा है आसमान नीले और सफेद रंग का है जो की बहोत ही खूबसूरत लग रहा है।

एक बड़ी सी गाड़ी है जिसमे मकैनिक उसे ठीक कर रहा है और बह लोहे की जंजिरो से उठाई हुई है।

लाइट ओर मिरर लगे हुये है ओर यह देखने मे--

लिखे हुए है जिनमे दुकाने बनी हुई है ओर बिजलि के खम्भों पर टिन्स लगाई हुई है आसपास--

लगाये हुए है और अंदर जाने के लिए बहोत ही सुंदर बोर्ड लगे हुए है और चारों तरफ --

सड़क के किनारे लोहै का दरवाजा बना हुआ है जिसमे आने जाने के लिए छोटे-छोटे सीढ़िया भी बनाई हुई है दरवा--

रूम मे एक बहोत ही पुरानी मूर्तीया रखी हुई है जिनके हाथों मे बिना और बहुत ही सुंदर--

तालाब मे चारो तरफ नाबे है जो की लड़की की बनी हुई हैं और बहोत सारी महिलाए और बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं।